और सारी युवक युवतियां उनके गार्डीअन आए हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक --

यह एक बस स्टैंड है और बस स्टैंड में जो पोल खुटा जो होता है बिजली का जो खम्भा होता है।

ये फुटकर वस्त्रो के विक्रेता है और फुटकर वस्त्रों के विक्रेता नहीं है वस्त्रों --